हूं ऊजरा पेंटिंग छै देखे में बढ़िया --

घर बनी रहल छै टोकरा छै कुदाल छै बालू छै सीमेंट छै अम आधा घर बनले आधा ब --